इस चित्र में एक कंप्यूटर ओर चिड़ियाँ बल्ला--

इस चित्र में बड़ा मैदान दिख रहा है।

बाजू में एक बड़ा दरवाजा है जिसे निकलने का रास्ता है।

बाजू में एक बोलोरो खड़ा हैं और एक कोई दूसरी गाड़ी खड़ी हैं चार पहिया।

दो सूट लड़कियाँ की दिख रही हैं और दो जोड़ी कपड़े लड़के के दिख रहे --

रेल की पटरी के ऊपर एक ट्रेन जा रही है।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

और सामने पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

इस चित्र में ये एक कपड़े की दुकान है जहां--

इस चित्र में एक आदमी पीली कलर की शर्ट पहना।

बाजू में एक ट्रेन आ रही है मालगाड़ी जिसमें कोयला लोड है।

सामने मुझे तीन लोग नजर आ रहें एक ने व्हाइट शर्ट और ब्लॅक पॅन्ट पहेना हैं।

पजामा कुर्ता पहना है और ऊपर एक जर्सी भी चढ़ाई हुई है।

इसमें एक इंसान कुछ शायद पैसे निकलवाने गया है।

इस चित्र में मुझे देश का नंबर वन सीमेंट का--

सात लोग नजर आ रहे हैं सात या आठ लोग।

चारों तरफ हरा भरा पौधे है।

इस पे बहोत सारे लोग खेल रहे हैं छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब खेल रहे हैं आजू बाजू--

और नीचे कुछ लोग कुछ मजूर काम कर रहे हैं।

और इसमे गेट वगैरा सामने दिख रहा है मुझे कांच के--

इस चित्र में एक मजार शरीफ दिख रही है।